इस दृश्य में हमें कुछ वीकल्स भी पार्क किए हुए दिख रहे हैं।

आस पास बहोत ही ज़्यादा पेड़ दिखाई दे रहे है।

ऊपर उम धूप बहोत ही ज्यादा पड़ रही है।

इस दृश्य में ऊपर मौसम बहोत ही सुहावना है।

इस दृश्य में हमें कुछ लोग काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

आसमान में बहोत ही ज्यादा लाइटें अलग अलग तरह की चमक रही हैं।

अच्छा और आकर्षित नजर आ रहा है।

अह नीचे बहुत ही बड़ी बड़ी घास उगाई गई है।

यह घर आधा बन चुका है।

हमें बहुत ही ज्यादा लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है ऊपर मौसम बहुत ही ज्यादा सुहावना नजर आ रहा है।

उसके ऊपर अलग अलग तरह के फूल जो कि सफेद रंग के दिखाई दे रही है।

पोर्ट पर खड़ा हुआ है जिसकी हालत बहुत ही खराब है।

आस पास बहोत ही बड़े बड़े पैक भी दिख रही है।

इस दृश्य में हमें एक पार्क दिखाई दे रहा है जिस पर अलग अलग तरह के झूले लगे हुए हैं।

इसमें बच्चों बच्चों की भीड़ बिल्कुल भी नहीं दिख रही।

यह दृश्य देखने में हमें किसी दुकान का लग रहा है।

यह दृश्य हमें किसी समुद्र का दिखाया गया है।

ऊपर मौसम बहोत ही ज्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है।

अ समुद्र का पानी की लहरें बहुत ही ज्यादा बड़ी बड़ी हमें--

ऊपर बहुत ही ज्यादा धूप पड़ रही है।

यह दृश्य देखने में हमें किसी मंदिर का नजर आ रहा है।